हा पे एक दुकान है अभी दो तीन बाइक लगा हुआ है बहुत अच्छा लग रहा है बहुत सारा बाइक वाइक है बहुत अच्छा लग रहा है यहा पे एक दुकान है दो मंजिल वाला दुकान है घर--

यहां पे दो तीन चार पांच छे सात आठ औरत है हरा कलर का पंडित लोग पहले--

यहां पे एक आदमी हरा कलर का फूल उल नोच रहा है बहुत अच्छा लग रहा है यहां पे हरा कलर का --

टी शर्ट हुआ है बहुत अच्छा है यहां पे आप लोग देख सकते हैं --

यहां पे पेट्रोल पंप पे बहोत सारा आदमी है। बहोत अच्छा लग रहा हैं। यहां पे दो तीन बॉल लगा हुआ है। बहोत दूर एक बिल्डिंग है बहोत अच्छा बिल्डिंग है व्हाईट कलर का --